तबला लेके इधर को जा रहे हैं ।

पेड़ पौधे भी है उधर कोई चलती बस है ये बस जाती है ।

ये डी.एस.पी. सोडा कॉफी शॉप है और यहाँ पे कई प्रकार के--

जेसे टी हो गया कोफ़ी हो गया सोडा हो गया।

दे रहे है यहाँ पे देखिये विभिन्न प्रकार के --

देखिये ये रेलवे प्लेटफोर्म है और देखिये --

और ये पेड़ पौधे काफी बड़े-बड़े --